यहां पर आसमान बहुत ही साफ सुथरा है और ज़मीन पे घासें हैं और पेड़ पौधे हैं और बेंच पड़ी है और --

इसका टिकट लेना पड़ता है यहाँ पे और यहाँ पे एक झूला भी है।

गिफ्ट तोहफा स्पोर्ट्स की चीजें भागने की चीजें बैग्स और सी.बी.एस.ई. बुक एन.सी.ई.आर.टी. बुक्स हर पिरकार की बुक्से किताबें मिलती हैं।

ये लोग है जो कि समुन्द्र में सैर करने आये हैं जो कि बोहोत ही मंगलमय होने वाली है | ये सब चीजे उन्ही के लिए होती है जो समुन्द्र में तैर करने आते हैं।

और ये उसकी बराबर में पेड़ कई सारे पौधे हैं और पत्थर भी पड़े हैं और लोहा भी हैं और ट्रेन की पटरियाँ भी हैं।

और यहाँ पर टॉवर लग रहे हैं। यहाँ पर पेड़ पौधे फूल आदि सब चीजें स्थित --

एक पुल्ख पुल है जो कि घंटा घर करके ऊपर का घंटा घर इसके सामने है।